यहां पर हम एक रेस्टोरेंट देख पा रहे हैं जिसकी दीवारें सफेद रंग पे रंगी गई है।

यहां पर हम एक कैफे देख पा रहे हैं जिसके बाहर एक कार भी रखा गया है।

और उसमें एक लाल कलर का कप भी बनाया गया है।

यहां पर हम एक घर देख पा रहे हैं जो सफेद और हरे रंग का है।

वहां कुछ पेड़ भी देख पा रहे हैं जोकि हरे रंग के है।

यहां पर हम चार मंजिला इमारत देख पा रहे हैं।

यहां पर हम एक बल्ब भी देख पा रहे हैं जो की जल रहा है।

और कुछ पेड़ भी हैं जो कि सफेद रंग से रंगा गया है।

और एक इंसान जोकि टेबल पर बैठा हुआ है।

यहां पर हम एक रेलवे स्टेशन देख पा रहे हैं।

जहां पर दो बस भी खड़ी हुई है और हम बाहर की तरफ तीन लोग भी देख पा रहे हैं।

यहां पर हम एक गैरेज देख पा रहे हैं जोकि टीन का बना हुआ है।

और एक रिक्शा भी है जिसमें एक इंसान बैठा हुआ है।